पूरे बिल्ड उँ पूरी गैलरी व्हाइट कलर से पोता हुआ है पेंट किया हुआ है।

ऊपर लाइट की फिटिंग दिखाई दे रही है और यहां पर एक मीटर भी है।

पी है उम्म लिखा हुआ है एक काटून के अंदर उसके अंदर कुछ मटेरियल एक सी_पी_यू भी दिखाई दे रहा है और एक आदमी के पास में --

बड़े बड़े पेड़ पौधे एक छोटी सी वैन लेकिन वह बाउंड्री नजर आ रही है उस बाउंड्री पे कुछ सामान रखा हुआ है और दूर को देखिए कुछ एक लेडीज भी दिखाई दे रही है।

लाइट का खंभा भी दिखाई दे रहा है जिसमें कोई लाइट का तार तो मुझे नजर नहीं आ रहा है और सफेद सा बादल मुझे दिखाई दे रहा है एक दम खुला हुआ साफ सुथरा।

टी_वी दिखाई दे रही है यहां का डेकोरेशन भी बड़ा सुंदर सा है और कांच भी लगा हुआ है खिड़की के बाहर का भी नजारा मेरे को दिखाई दे रहा है सुंदर सा

मुझे यहां पर एक बहोत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर कुर्सी रखी हुई है टेबल भी रखी हुई एक लड़का अपने हाथ में मोबाइल लेकर रखा हुआ जैसे लगा जैसे वो कुछ--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

कुछ आदमी भी दे जाते और आते हुए नजर आ रहे हैं दिखाई दे रहे हैं।